ये फोटो में एक दिखाई दे रहा है।

फिर में दिखाई दे रहा है बम्बू लोग भी और आसमान लोग दिखाई दे रहा है और घर दिखाई दे रहा है आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

यहां फ्लैग लोग भी दिखाई दे रहा है यहां पेड़ लोग भी दिखाई दे रहा है आदमी लोग भी दिखाई दे रहा है।

गाछ रुख भी है फिर हमे पेड़ पे दो लोग दिखाई दे रहा फिर पत्ता गिर भी दिखाई दे रहा--

लोग भी दिखाई दे रहा है फिर यहाँ से लोहा से बनाए हुए लोग दिखाई दे रहा है पेड़ लोग भी है।

यह उसमें दिखाई दे रहा है लाइट लूट जल के उसी रूम में एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

यहा हमे डीखाई दे रहा है बहु ज्यादा आदमी वे यहा मे शादी कर रहे से डीखाई डे रहा है।

यहां में लड़का लोग लड़की बहुत ज्यादा है बच्चा लोग भी हैं और फिर इधर में दिखाई दे रहा है पेड़ लोग भी है।

यह घर खिड़की दिखाई दे रहा है शीशा से बनाया हुआ वाला खिड़की है।

ये फोटो में हमको एक बड़ा वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

हमको एक फोटो में पेड़ दिखाई दे रहा है।

हमको ये फोटो में एक कटरा दिखाई दे रहा है।

हमें स्टूडेंट और टीचर लोग की तरह दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत ज्यादा है।

ये फोटो में हमको एक टेबल दिखाई दे रहा व्हाइट कलर का एक टेलीफोन और फिर शीशा से ढक है जो--

और म्यूजिकल लुक चलाके है।

स्विमिंग पूल एक आदमी दिखाई दे रहा है फिर ओ जो टेबल के ऊपर कुछ कर रहा है फिर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक घर का दीवार दिखाई दे रहा है।

ए सी भी दिखाई दे रहा है।